यह कुर्सी है कुर्सी बहुत सुंदर है यह सोफा सेट कुर्सी जैसा है लोहे का कुर्सी है इसका रंग लाल है ।

लोहा काला है देखने में बहुत सुंदर लग रखा है इसमें बोर्ड लगा हुआ है लाइट लगा हुआ है।

यह तालाब है तालाब बहुत सुंदर है दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है।

लड़की भी लाल टॉप पहनी है चूड़ी पहनी है।

यह बहुत सुंदर मकान है मकान तीन तल्ला लग रहा है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है मकान ।

लड़की सब खड़ी है इ लड़की है जो बच्चा ली हुई है जूता पहनी हुई है जींस टॉप पहनी है इधर में भी लड़की सब खड़ी है वो सब भी बच्चा ली हैजींस टॉप पहने --